यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े घरों बच्चे पढ़ते हैं।

यहाँ पर कटर इरेजर पेन्सिल पेन स्टेशनरी कोपी ओर यहाँ पर अलग-अलग भेरायटी की बुक पढने के लायक है। यहाँ पर सभी बुक मिल जाती है।

बंधा कोभी खाने में भी स्वादिष्ट होते हैं।

यह एक क्लिनिक है। यह क्लिनिक में हर प्रकार के रोग का इलाज किया जाता है।

यह घर में चारों तरफ रड बांधकर इसमें सीमेंट डाला जा रहा है।

यह एक चर्च है। यह चर्च में बहुत से लोग आते हे ।